यहां पर टीन सीट से बना हुआ एक हॉल भी दिख रहा है और साथ ही एक बिल्डिंग भी है।

इस इमेज में हमें एक घर का दरवाजा नजर आ रहा है।

सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने की--

इस पर एक कायस्थ धर्मशाला का बोर्ड है।

और इस शिवलिंग के ऊपर व्हाइट कलर के फूल लगे हुए हैं।

लोहे का कारखाना दिखाई दे रहा है।

यहां पर साइड में लोहे के पाइप भी रखी हुए हैं।

यहां पर हमें एक रैक दिखाया गया है।

जिसमें की बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और इसके सामने की तरफ हमें एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत सारा फॉग हो रहा हैं।

और कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं।

यहां पर हमें एक टेबल पर कम्प्यूटर रखा हुआ दिख रहा है।

अलग अलग तरह के नाइटवेयर गर्ल्स के टंगे हुए दिख रहे है।

दिखाई दे रहा है जिसमें की एक--

इसमें गोल्डन कलर की लाइट इफेक्टस दिखाई दे रहे हैं।

पानी पीता हुआ दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति ने--

टी शर्ट पहनी हुई है और नेकर कर पहना हुआ है।

जिसमें की टायर्स की बॉर्डर बनी हुई है और आस पास--

जो कि तैरती हुई दिख रही है।

और इसी के पास में एक टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर--

और यहां पर येलो कलर का हेलमेट भी रखा है।

आर यहां पर दीवाल पर एक चक्र भी बना हुआ दिख रहा है।

यहाँ पर एक वाइट कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है।